using single board heater system virtual labs on windows os पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस स्पोकन ट्यूटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे दूर के यूज़र्स कंप्यूटर पर आवश्यक सॉफ्टवेर संस्थापन
sbhs वेबसाइट उपयोग करना
दूर से एक step test परिक्षण करना
पूर्ववाश्यकता में introduction to sbhs और introduction to xcos ट्यूटोरियल्स देखें
ये स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर उपलब्ध हैं
यह ट्यूटोरियल मैं windows7 32bit operating system पर रेकॉर्ड कर रही हूँ
निश्चित कर लें कि आपके कंप्यूटर पर scilab संस्थापित हो
scilab को sbhs dot os hyphen hardware dot in slash downloads या www dot scilab dot org से डाउनलोड किया जा सकता है
ध्यान दें कि scilab संस्थापित करने के लिए आपको इन्टरनेट कनेक्टिविटी कि ज़रुरत होगी
सभी sbhs परिक्षण scilab कोड्स scilab 533 उपयोग करके लिखे जाते हैं और इसी वर्शन की सलाह दी जाती है
scilab का उच्च वर्शन भी समान रूप से कार्य करेगा
तथापि scilab के उच्च वर्शन में रूपांतरित कोड निम्न वर्शन में दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता
मैंने पहले ही scilab 533 संस्थापित कर लिया है
अब अगला स्टेप परिक्षण scilab कोड डाउनलोड करना है
एक वेब ब्राउज़र खोलें
एड्रेस बार में टाइप करें: os hyphen hardware dot in और एंटर दबाएँ
यह open source hardware के लिए वेबसाइट है
sbhs प्रोजेक्ट पर क्लिक करें
बायीं तरफ downloads पर क्लिक करें
sbhs scilab codes for windows के लिए डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें
यह scilab code डाउनलोड करेगा
इसे डेस्कटॉप पर सेव करें
यह यहाँ है
डाउनलोड की हुई फाइल zip फॉर्मेट में होगी
डेस्कटॉप पर इस zip फाइल की विषय वस्तु को extract करें
यह करने के लिए इस पर राइटक्लिक करें और extract here चुनें
इस फोल्डर की विषय वस्तु की चर्चा ट्यूटोरियल के आगे के भाग में कि जाएगी
अब sbhs virtual labs वेबसाइट को देखते हैं
बायीं तरफ virtual labs लिंक पर क्लिक करें
यह वो इंटरफ़ेस है जहाँ से कोई भी sbhs पर दूर से परीक्षणों को करने का एक्सेस प्राप्त कर सकता है
पहली बार करने वाले को login/register विकल्प पर क्लिक करके एक बार रजिस्टर करना है
इसके बाद एक फॉर्म भरना और जमा करना है
फॉर्म के सफलतापूर्वक जमा होने के बाद यूज़र को एक एक्टिवेशन सक्रियण ईमेल भेजा जाता है
ईमेल में प्राप्त लिंक को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने में उपयोग किया जाना चाहिए
ध्यान दें कि एक्टिवेशन प्रक्रिया शीघ्र नहीं भी हो सकती है यह कुछ समय ले सकती है
मैं अपने रजिस्टर्ड account से लॉग इन करुँगी
मैं अपना यूज़रनेम और पासवर्ड प्रविष्ट करुँगी
सफल लॉग इन के बाद यूज़र book slot view/delete slot आदि का एक्सेस रखता है
एक slot वो समय अन्तराल होता है जिसमे आप एक परिक्षण करते हैं
हमारे केस में एक slot प्रत्येक घंटे के 55 मिनट में समाप्त होता है
book slot विकल्प पर क्लिक करने के बाद उपभोक्ता के पास दो चुनाव होंगे
कोई भही या तो current slot या future slot बुक कर सकता है
book now विकल्प केवल तभी दिखेगा यदि current slot खाली है
book future slot विकल्प हमेशा उपलब्ध होगा
यह हर दिन दो गैरलगातार स्लॉट्स को बुक करने कि अनुमति देगा
मैं book now विकल्प पर क्लिक करुँगी
आपको ऊपरी तरफ आपकी बुकिंग का विवरण दिखाते हुए एक स्वीकृति मिलेगी
स्लॉट बुकिंग पूरा होता है अब वेबसाइट से डाउनलोड किये हुए एक सरल step test परिक्षण को रन करते हैं
डेस्कटॉप पर डाउनलोड और सेव लिए हुए फोल्डर को खोलें
आप एक steptest फोल्डर और एक common files फोल्डर देख सकते हैं
किसी भी फोल्डर को उनके स्थान से न हिलाएं
अगर डायरेक्टरी संरचना बदलती है तो परिक्षण निष्पादित नहीं होगा
अगर आप एक परिक्षण को कहीं भी कॉपी करना चाहते हैं तो निश्चित कर लें कि आपने common_files फोल्डर भी कॉपी कर लिया हो
तथापि निश्चित कर लें कि common files फोल्डर हमेशा परिक्षण फोल्डर से बाहर हो
common files फोल्डर खोलें config फाइल खोलें
यह फाइल proxy settings करने में उपयोग होती है
यदि आप iit बॉम्बे में हैं या iit बॉम्बे के बाहर हैं
और ओपन नेटवर्क उपयोग कर रहे हैं तो config file की विषय वस्तु को नहीं बदलें
उदाहरण के लिए घर पर या मोबाइल इन्टरनेट उपयोग कर रहे हैं
अगर आप iit बॉम्बे से बाहर हैं और proxy network उपयोग कर रहे हैं तो config file की विषय वस्तु को बदलें
उदाहरण के लिए संस्थान में ऑफिस में आदि
use proxy की वैल्यू में yes को कैपिटल y रखें
जो आप कर रहे हैं उस proxy network के अनुसार अन्य विवरणों को बदलें
file को सेव और बंद करें
steptest फोल्डर खोलें
run फाइल पर जाएँ और डबलक्लिक करें
यह python पर आधारित sbhs client एप्लीकेशन खोलेगा
ध्यान दें कि इस फाइल का पहली बार निष्पादन sbhs client को खोलने में एक मिनट लेगा
यह परिक्षण के विभिन्न पैरामीटर्स दिखाएगा जैसे
sbhs connection client version user login और experiment status
हरे डॉट्स का मतलब है कि sbhs client server से जुड़ सकता है
यह भी दिखाता है कि client version जो मैं उपयोग कर रही हूँ वो नवीनतम है
user login और experiment स्टेटस लाल हैं क्योंकि अभी तक मैंने लॉग इन नहीं किया है और परिक्षण रन नहीं हो रहा है
यह आपको लॉग इन करने के लिए भी विकल्प देता है
अपना username और password टाइप करें
यह username और password वही है जो आपने स्लॉट बुक करने के लिए उपयोग किया
login पर क्लिक करें
निश्चित कर लें कि आप सही लॉग इन विवरणों के साथ बुक की हुई डेट और टाइम पर लॉग इन करें
ready to execute scilab code मैसेज की अपेक्षा करें
steptest फोल्डर जो परीक्षण फाइल्स रखता है उस पर जाएँ
stepc फाइल पर डबलक्लिक करें
इसे स्वतः ही scilab खोलना चाहिए
इसे scilab editor में फाइल भी खोलना चाहिए
यदि यह नहीं होता है तो file मेन्यु पर क्लिक करें open a file पर क्लिक करें
stepc फाइल चुनें और open पर क्लिक करें
scilab console पर जाएँ
कमांड टाइप करें: getd space dot dot slash common files और एंटर दबाएँ
scilab editor पर जाएँ
मेन्यु बार में execute विकल्प पर और फिर file with echo पर क्लिक करें
अगर नेटवर्क ठीक से काम कर रहा है तो यह xcos डायग्राम खुलेगा
अगर यह नहीं करता तो यह scilab console पर एरर दिखाएगा
step test xocs डायग्राम उपयोग करके हम परीक्षण पैरामीटर्स जैसे heat और fan सेट कर सकते हैं
इसके पैरामीटर्स को बदलने के लिए प्रत्येक block पर डबलक्लिक करें
300 सेकेंड्स के बाद मैं हीट को 30% से 45% तक बदलने के लिए सेट करुँगी
मैं initial value में 30 final value में 45 और step time में 300 प्रविष्ट करुँगी
उसी प्रकार मैं fan को 50% पर नियत करुँगी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है
अब xcos diagram को सेव और निष्पादित करते हैं
निष्पादन के लिए मेन्यु बार में start बटन पर क्लिक करें
अगर कोई एरर नहीं है तो यह plot window खोलेगा
यह ऊपर से नीचे तक heat fan और temperature तीन ग्राफ्स रखेगा
sbhs client पर जाएँ
यह current iteration heat fan temperature और परीक्षण के लिए बचे हुए टाइम को दिखाता है
यह log file नाम दिखाता है जो इसने इस प्रयोग के लिए बनाया है
ब्राउज़र पर जाएँ show video विकल्प पर क्लिक करें
यह sbhs का लाइव विडियो फीड देगा जो आप इस समय एक्सेस कर रहे हैं
यह यथार्थ परीक्षण है और पूर्ण होने के लिए कुछ समय लेगा
मैं इस रेकॉर्डिंग को कुछ समय के लिए रोकूंगी और फिर पुनः आरम्भ करुँगी
परीक्षण के पर्याप्त समय के बाद प्राप्त ग्राफ दिखता है
मैं xcos विंडो पर उपस्थित stop बटन पर क्लिक करके सिमुलेशन को रोकूंगी
परीक्षण समाप्त होने के बाद sbhs client विंडो को बंद करें
अब परीक्षण फोल्डर पर जाएँ और logs फोल्डर खोलें
यह आपके यूज़रनेम के बाद फोल्डर का नाम रखेगा
इस फोल्डर को खोलें और log file पर जाएँ
year month date hours minutes seconds dot txt नाम वाली log फाइल को पढ़ें
आगे के विश्लेषण के लिए इस log फाइल को उपयोग करें
इसे सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा: sbhs पर दूर से परीक्षण करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर संस्थापन क्या होते हैं
sbhs virtual labs वेबसाइट को कैसे उपयोग करते हैं
python पर आधारित sbhs client application कैसे उपयोग करते हैं
परीक्षण के लिए scilab code को कैसे निष्पादित करते हैं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
ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए contact at spokentutorialorg पर लिखें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
यह भारत सरकार के एम एच आर डी के ict के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है
इस मिशन पर अधिक जानकारी